है साइड मे पेड़ वगेरह भी दिखाई दे रहे हैं और इसके आगे भी थोडे से पेड़ हैं।

और इन महिलाओं के हाथ में कुछ सामान भी रखा हुआ है जैसे फ्रूट्स वगैरा उनके हाथ में रखे हुए हैं नारियल रखे हुए हैं पपीता वगैरा यहाँ पे अनानस रखी हुई है।